मुझे इस फोटो में कुछ लोग दिखाइ दे रहे है।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

मुझे इस फोटो में बहोत सारे ब्रश दिखाई दे रहे हैं।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

मुझे एक फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में एक कुर्सी दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में बहुत सारे फुगे दिखाई दे रहे हैं।